है। यहाँ भी लोगों के हेल्प करते है और दो आदमी है।

और अंदरो एक पेड़ हेगो और हरो हरो फोटो गई अंदर गेलो।

यहाँ आपने लोग बच्चा पढ़ने और ये स्कूल बंद दिख रो हैं आगे पत्ता पड़े हुए हैं हरो- हरो | हरो -हरो पेड़ हैं।

खूब खूब बड़ो होरो नन्ही - नन्ही छोटी - छोटी और सी बैठी --